ये मान के चलिए यहाँ पे अ एक रथयात्रा निकल रही है यहां पे बहुत भारी मात्रा में भक्त लोग की भीड़ लगी हुई है।

और सब लोग जयकारा जयकारा करते हुए अपनी यात्रा को निकाल रहे हैं।

यहां पे अह जो भी अह लोग आती हैं वो अपना अह उद्धार करके जाती हैं।

ये एक प्लेयर फील्ड है यहां पे जल लगी हुई है यहां पे --

ये एक पार्क अ जैसा मैदान है और यहां पे--

ये मुझे दिखाई दे रहा है की कलश है एक एक रेस्टोरेंट है एक होटल भी कह सकते हैं।

और व्हाइट सब अलग तरह तरह के फिश यहां पे मौजूद हैं जो भी आपको फिश लेने हैं यहां पे मिल जाएंगे।

ऑरेंज कलर की कलर की सारे के सारे परदे आपको यहां मिल जाएंगे।

बादल भी बोहोत अच्छे सुहावने दिख रहे हैं।

और यहां पे अं इतनी अच्छी बिल्डिंग है यहां पे यहां हैं।

ये एक किराने की शॉप है जहां पे अलग तरह तरह के अ शैंपू टंगे हुए हैं और अड्डे में जो है।

एक डेंटल हॉस्पिटल है जो डेंटल हॉस्पिटल जो दांतों का हॉस्पिटल है।

ये पीके है जहां पे दो टंकी रखी हुई है किसी के छत पे--

जो पूरे साइड से ले रहा है जो पूरे दूर तक एकदम से पहाड़ आ गया है।

अभी ओ सूटी का समय लग रहा है कोई पर्सन यहाँ है नही।

एक पौंड है और नीचे घास लगा हुआ है और लालिमा छाई हुई है आसमान में।

और शर्ट टंगे हुए हैं यहां पे ब्लेजर टंगे हुए हैं।

यहां पे अ जो है ये हैं बने हुए हैं।